इस एजेंसी की प्रचार की जा रही है बड़े-बड़े पोस्टर लगा कर धन --

यह एक दुकान है । जिस दुकान में आपको सिर्फ --

स्ती त में एक बनता हुआ घर दिख रहा है।

और इस मनुष्य के पीछे बहुत सारी किताब रखी हुई है धन्यवाद।

इस चित्र में एक अंटीना है।

इस चित्र में मकान हैं दराज हैं चौकी हैं।